यहां पे मुझे बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं जिसमें कुछ आदमी बैठे हैं कुछ आदमी खरे हैं टेबल लगा हुआ हैं टेबल पे--

यहां पे मुझे एक होटल दिख रहा है रेड चिली का काउंटर है काउंटर पे चूल्हा रखा हुआ है चूल्हे पर समान रखा हुआ है बहोत सारा।

यहां पे मुझे पेर सब दिख रहे हैं जो की हरा भरा है और ब्लैक ब्लैक दीवाल भी दिख रहा है और सब है।

अ दूल्हा हैं स्टेज पे खड़ा हुआ है पंडाल लगा हुआ है फूल से सजाया हुआ पंडाल एक आदमी भी खड़ा है बल्ब जल रहा है।

यहाँ मुझे रोड दिख रहा है रोड के उस साइड थोड़ा सजा हुआ है एक घर दिख रहा है जो की चाइनीज भोल लगा हुआ है।

यहां पे मुझे ऊं बहोत सारे गिलास दिख रहा है जो कि एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है और दीवाल भी दिख रहा--

यहां पे मुझे बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं और कुर्सी भी दिख रहा है टी_वी दिख रहा है पंखा दिख रहा है।

यहां पे मुझे एक छत दिख रोड दिख रहा है एक गेट दिख रहा है दीवाल है।

यह समृद्धि का एक कॉस्मेटिक का दुकान है जिसमें बहुत सारा कॉस्मेटिक की दुकान है और इसमें बहुत सारे सामान हैं।